कितनी अच्छी दुकान है न ये सब्जियों की सब कुछ मिलता है और भिंडी गाजर है और लौकी है खीरे हैं शिमला मिर्च भी है बैंगन भी है सब ले लेते --

अगर जैसे कहीं दूर दूर जाना होता है तो यहां से ऑटो पे ऑटो ले लेते हैं लोग और चले जाते हैं।

और ये पेड़ है इस पेड़ के नीचे भी काफी सारे ठेले रहते हैं।

और यहाँ देखो सब मोमबत्ती दिया वगेरा लगा रहे हैं।

ये हमारे यहाँ पर हाईवे है और यह सड़क पे चौबीस घंटे जाम रहता ही है देखो कितनी लम्बी लाइन लग रही है अब भी जाम की ट्रक है उसके आगे ट्रेक्टर है फिर ट्रक ही ट्रक है देखो उसके बाद कितनी सारी लंबी जाम लगा रहता है यह जाम ही रहता है।